फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी वगैरा रखी हुई दिखाई दे रही हैं और सफेद कलर की टाइले लगी दिखाई दे --

जिसके अंदर एक महिला एक बच्चे को लेकर बैठे हुई।

बच्चा खरगोश के संग खेलता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक गार्डन का फोटो दिखाई दे रहा है।

और एक स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और दो बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और मंदिर का बहोत अच्छा लग रहा है रंग बिरंगा --

जिसमें एक पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है।